दीवार पर कुछ बोर्ड लगा हुआ हैं।

यह तस्वीर एक है।

यह जिम का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारे हरेभरे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

जिसमें कुछ विशेष तरह के अनाज लगे हुए हैं।

चित्र देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं।

ये लाइटों से सजा हुआ है।

चित्र में लाल गंगा शॉपिंग मॉल दिखाई दे रहा--

जिसमें की बहु मंजिला फ्लैट बना हुआ है।